बहुत सारा मछलियां बेच रहा है और दो-तीन व्यक्ति का लोग ले रहा है जैसा की हम देख रहे हैं की लग रहा है की यह देसी मछलियां है ।

जैसा की हम देख पा रहे है एक फल का दूकान है और उसमे बोहोत अच्छे-अच्छे किस्म के फल रखे हुए है।